जिसमे वायर लटकी हुई है और नीचे कुछ ईंटे बिछी हुई है।

और इनमें एक लोहे लोहे का और कांच का गेट भी लगा हुआ है।

पानी में कुछ नाव भी है जिनके ऊपर झंडा लगे हुए हैं।

इनमें गत्ते की बॉक्स के अंदर बहुत सारी गुड़िया --

और इसके पीछे एक सफेद कलर की दीवार है।

जो कि बड़े बड़े डिब्बो में बंद है और छोटे डिब्बो में भी है और --

और एक बाहर मीटर लगा हुआ है।

इस फोटो में दुकान में बहुत सारी किताब कॉपी पेन पेंसिल भी है।

जिसमे कुछ गुब्बारे लगे हुए है।

जिसमें कुछ सफेद रंग के कट्टे पड़े हुए हैं।

इसके बरबर में बहोत सारे घर भी है और--

जो कि लाल रंग के मैट के ऊपर खड़े हुए हैं।

इस फोटो में कुछ लड़कियाँ पढ़ाई कर रही हैं।

इन्होंने अपना मुं छुपा रखा है।

और इस फोटो में कुछ लोग भी खड़े हुए है ए--

जहां बहुत सारी किताब कॉपियां रखी हुई है।

इस फोटो में एक पंप है।

यह एक स्कूल के कमरे का फोटो है।

और इस काउंटर पर बहुत सारी सफेद कलर की टीशर्ट पड़ी हुई है।

इस ऑफिस में नीले कलर की कुर्सियां हैं और कुछ स्कूटी बाइक भी खड़ी हुई है।